यह नई दुकान की ओपनिंग हो रही है |

जिसका गेट और इसके साइड में लगे ये पेड़ रंग-बिरंगे पेड़ फूल पौधे कितने सुन्दर लग रहे है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसका दिवाल का निर्माण कराया गया है।

यहाँ पे बच्चो को लाया जाता है इ मीन चूजे को लो लाया जाता है जिसको खिला पिला के बड़ा कर दिया जाता है ताकि इस को मार्किट में बेचा जा सके।

जिसको हाथो से बनाया जाता है।

यहाँ बगल में छोटे-छोटे पेड़ लगाये गए हैं। सामने एक गाड़ी खड़ी है बगल में एक घर का निर्माण हो रहा है उसके बाद घर बने हुए हैं पुराने घर भी इसमें जो कि बोहत ही --